दिए गए इमेज में एक लड़का खड़ा है जो काले रंग का कुर्ता पहने हुए है और उसने गले में दुपट्टा पीले रंग का ले रखा है। हल्के --

अ खेल का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें अ सफेद रंग की लाइनिंग बनी हुई है। उसमें तीन बच्चे रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जूते पेहेन रखे हैं।

दिए गए इमेज में हमें एक पक्की सड़क नजर आ रही है। सड़क के किनारे डिवाइडर नजर आ रहा है जो रेलिंग से बना हुआ है।

उस रेलिंग के उस पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही हैं जो सफेद रंग की हैं। इसमें भी रोलिंग लोहे की लगी हुई है।

सामान मिलते है। इसमें कई तरह के समान हैं।

दिए गए इमेज में हमें अ गिफ्ट हाउस की दुकान दिखाई दे रही है। इसमें कई सारे डॉल नजर आ रही हैं।